यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक कतार मे गेम खेल रहे हैं। गेम --

अपनी कोरोना टेस्ट करवा रही है। एक आदमी कोरोना की कास्टूम पहने जाँच कर रहा है कोरोना की --

काले कलर का कुछ हाथ मे पहने हुए है वो अपना हाथ चट्टानों के ऊपर रखा हुआ है | चट्टानों मे चोक से बोहोत कुछ लिखा हुआ है।

सामने बोहोत सारे लोग प्याज़ बेच और ख़रीद रहे हैं यहाँ पर आस-पास बोहोत सारी प्याज़ की बोरियाँ है।

यह एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग में लकड़ियां लगी हुए हैं। बि ल्डिंग बहोत सुन्दर लग रही है। बिल्डिंग के ऊपर खुला आस --

खुला आसमान है। आसमान का कलर नीला है। उसमें सफ़ेद बादल है। दूर दूर तक बहुत बड़े बड़े चट्टानें हैं। पेड़ हैं। पौधे हैं।

ये है लड्डू गोपाल की फोटो है। लड्डू गोपाल बोहत अच्छी अ पोशाक पहने हुए हैं। बोहत सुन्दर मन मोहक भगवान दिखाई दे रहे हैं।